--स चिप्से रखी हुई है यहाँ पर टायर भी रखे हुए है यहाँ पर बहोत सारे आदमी खड़े हुए है कुछ गा बाइको पर बैठे हुए है।

यहाँ पर मुझे हॉस्पिटल सा लग रहा है यहाँ पर बहोत डॉक्टर जो है जिन्होंने डॉक्टरी के कपड़े भी पहने हुए है यहाँ पर सेलफ़ी ले रहे है यहाँ पर हर आदमी यहाँ पर अपने कपड़े भी ड्रेस पहने है।

ये टेबलों पर बेठे है सबने एक से कलर के ड्रेस पहने हुवे है पर मेडम भी नजर आई जो उन्हे समझा रही है पर सब पोस्टर पे चित्र बना रहे है कलाकारी कर रहे है।